इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है जो की एक पहाड़ पर है आसपास काफी सारे पेड़ पौधे और पहाड़ दिख रहे हैं।

आसपास काफी सारे लोग आए हुए हैं कुछ लोग जमीन पर लेट के ढोक दे रहे हैं और कुछ हाथ जोड़कर खड़े हुए --

एक लाइट जल रही है एक आदमी जो स्टूल पर बैठा हुआ है उसके पास बहुत सारे बकेट भी मछलियां रखी हुईं हैं।

की चलने के लिए भी दिया हुआ है आस पास काफी सारा खाली मैदान दिख रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे और घर दिख रहे हैं।

कुछ लोगों की तस्वीरें दिख रही है और इस अ गार्डन में फूलों से सजावट हो रखी --

आसपास काफी सारा कचरा भी दिख रहा है लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है लाइटिंग भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक जयपुर के टीले का मंदिर दिखाया है ये मंदिर पहाड़ों पर है।

इस तस्वीर में एक कैफे को दिखाया है यह एक शटर लगा हुआ है जो की ग्रीन रंग का है।

जो कि अभी अभी वर्कआउट कर रहा है आसपास काफी सारी चीजे रखी हुई है डंबल रखे हुए हैं।

लाल रंग की चेयर रखी हुई है जिस पर लोग बैठ रहे हैं।

और आस पास काफी सारी चीजें भी रखी हुई है ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है।

यह वे बहोत बड़ी पेंडेंट कुर्सी वाला का पोस्टर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक चर्च को दिखाया है इस चर्च के बाहर काफी सारी भीड़ है।

इस तस्वीर में एक महाविद्यालय को दिखाया है जो कि इस पर एक बड़े शब्द से लिखा है श्रीखंडेलो --

इस तस्वीर में एक मंच को दिखाया है इस मंच के आस पास काफी सारे लोग हैं और इस मंच के सामने --

जहां तीन फुटबॉल और कुछ ड्रेसस रखी हुई है साथ ही में कुछ खिलौने दिख रहे हैं।